बहुत बड़ा मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है।

उसके अंदर काफी समान दिख रहा है और लोग--

धारा दिखाई दे रहा है।

और ये बहोत सारे लोग है।

यहां पर एक सेंटर है।

बिरियानी रखी है और यहाँ पर एक--

इस फोटो में नजर आ रहा है।

और यहां पर एक।